पीछे पर्दे लगे हुए है ऊपर लाइटे लगी हुई है फूल मालाये लगी हुई है।

तरंगा लगा हुआ है आसपास बिल्डिंग है जीने लगे हुए है जिनो पे रेलिंग लगी हुई है।

नीचे |एक चबूतरा बना हुआ है उसमे तीन तखत रखे हुए है एक बड़े से बोर्ड रखे हुए कुछ लोग है।

हाथ मे एक पॉलीथिन लिए हुए है एक बड़ा सा शटर लगा हुआ है गेट मे--

यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है उसके दोनो पैरो मे पट्टी बंधी हुई है शॉकस पहने हुए है।

गाड़िया खड़ी हुई है आस-पास दिवाले है।

कुछ बच्चे जे सरपट्टी पे खेल रहै है आसपास दीवाले है।

हरे पत्ते की उ झालर लगी हुई है कुछ डलिया रखी हुई है कुछ बॉक्स रखे हुए है।

बेंचे रखी हुईं हैं उनपे कुछ लोग बैठे हुएं हैं बाहर जेंट्स खड़े हुएं हैं।

आगे कुछ गाड़ी रखी है इसकूटी रखी है एक आदमी खड़ा है।

आसपास कुछ व्हीलचेयर रखी हुई है व्हीलचेयर पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ फब्वारे है जिनमे से पानी निकल रहा है फब्बारो के पास मे एक दीवाल है जिसमे कांच लगे हुए है।

आसपास मकाने है रंग -बिरंगे बॉक्स रखे हुए है।

यहाँ पे नदी है नदी मे पानी भरा हुआ है पत्थरो के बीच मे भी पानी भरा हुआ है।

यहाँ पे बड़ा-सा पूल बना हुआ हैं नीचे नदी है।

फर्सी गड़ी हुई है तगाड़ी रखी हुई हैफावड़ा रखा हुआ हैनीचे छोटी-छोटी घास है।

नीली पॉलीथिन पे मछलियाँ रखी हुई है मछलियाँ मरी हुई है एक नली है।